इस चित्र में एक बड़ी साड़ी की दुकान दिख रही है। सामने बहोत सारे कपड़े रखे हुए हैं।

सअअ पेट्रोल पंप दिख रहा है।

एक जे_के हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज और जे_के हॉस्पिटल दिख रहा है सफेद रंग की कारें खड़ी हुई हैं।

एक बड़ा ऑफिस इनोगरेशन लग रहा है।

काले रंग की कुर्सियां दिख रही हैं यह एक कॉल सेंटर लग--

सामने की तरफ बहुत सारे लोग खड़े हुएं हैं।

सफेद और पीले रंग की कार खड़ी है।

सामने फ्रिज रखे हुए हैं आस बाहर निले नीले वास्केट रखे दिख रहे--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

सड़क बिल्कुल साफ है पीछे छोटे घर बने हुए हैं।